अपने मेकअप के लिए यहां पे बहुत सारी औरते आती है यहाँ पे औरतो का मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है और यहाँ पर बहुत ही कम दाम में मेकअप किया जाता है।

ऐसे लोग अपने परिवार के साथ आते है खाने के लिए यह बहुत ही महंगे होते हैं ।

यह एक डैम है। और यह डैम बहुत ही बड़ा है इस डैम में बहुत से लोग आते हैं नहाने के लिए इस डैम में --